यहाँ एक मैदान हैं जहाँ पर मन्दिर जो दो मन्दिर दिखाई दे रहे हैं जो सफेद कलर के हैं और बीच में एक पेड़ बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक स्कूल है जहां पर बच्चे जमीन में बैठकर आर्ट्स ऊपर से कुछ ड्रा कर रहे हैं। और--

और दो टीचर ब्लू कलर की साड़ी में खड़ी है और एक चेयर रखा हुआ है और बड़ी-बड़ी खिड़कियां नजर आ रही हैं गेट नजर आ रहे।

एक दरवाजा येलो कलर का है और एक ग्रे कलर का दिख रहा है गेट और बैंक के बाहर एक कार खड़ी है एक बाइक दिख रही है और यह क्रीम कलर में है।